दोबार जमींन में गड़े है जिसमे रंग-बिरंगे कपड़े लपटे हुए है।

शर्ट और पैंट पहना हुआ है दूसरे टी- शर्ट और पैंट पहना हुआ है ऊपर कुछ कपड़ा --

छत से बंधा हुआ दिख रहा है छत सफ़ेद रंग की है दुकान के ऊपर का बोर्ड लाल रंग का है उसपे सफ़ेद अक्षरों से कुछ लिखा है बहोत सारे कपड़े अंदर टंगे हुए है।

एक ओर महिला की आधी तस्वीर दिख रही है जिसका एक पैर और हाथ दिख रहा है पीछे लाल रंग का बोर्ड लगा है जिसमें सिल्वर अक्षर से कुछ लिखा--

दिख रहा है पीछे हरे रंग का बड़ा सा झाड़ दिख रहा है और बिजली का खंभा भी दिख रहा है।

बीच -बीच में गुलदस्ते जैसे बने है नीचे का फर्श सफ़ेद है।

पास आप तीन मंजिला इमरात दिख रहा है जिसमे बड़े बड़े खाचे लगे हुए है कुछ लाल रंग के बोर्ड लगे है।

एक बड़े झाड़ के कुछ डाल और उसका हिस्सा दिख रहा है पत्तिया दिख रही है पीछे बड़ा-सा पहाड़ जैसा दिख रहा है।

तस्वीर के अंदर काली गिट्टी से बनी बोहोत लम्बी रोड दिख रही है जो तीन भागों में बटी है पास में गुलाबी रंग --